तो यहाँ पर हम चार पंछी देख सकते हैं जो की ठहरे हुए हैं और एक पंछी उड़ता हुआ नजर आ रहा है और हमें उस --

जिसे अंग्रेजी में चिली कहते है और उसके पास में ही एक --

और जहाँ पर देख सकते हैं हम बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं दूर में और ऊपर खुला आसमान भी दिखा --

तो यहाँ पर हम नाव देख सकते हैं। नाव के अन्दर दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जो की नाव चला रहे हैं।

इस बड़ी ईमारत का कलर और हरा और कुछ कलर चले गया हुआ लग रहा है।